कुछ कपो पर आई डोंट नीड गूगल लिखा हुआ है।

यह चित्र एक शादी समारोह का चित्र लग रहा है।

इस मस्जिद पर एक लाउडस्पीकर टंगा हुआ है।

कई सारे डंबल रखे हुए हैं और कुछ फैन व ए_सी भी लगी हुई है।

यह एक सोफा सेट रखा हुआ है सामने एक सोफा रखा है जिसपे तीन आदमी बैठ सकते हैं।

और इस वॉटरफॉल में एक औरत--

इसमें सामने कुछ कॉपी और कुछ पेन रखे हुए हैं।

और इस नृत्य के फंक्शन को कुछ लोग बैठ कर देख रहे हैं।

यह एक स्कूल का चित्र लग रहा है जिस स्कूल में अंदर ग्राउंड --

यह एक डांस रिहर्सल का चित्र लग रहा है।

यह डांस पंजाबी भांगड़ा लग रहा है।

यह समुद्र किनारे का चित्र लग रहा है जिसमें सनसेट होता हुआ नजर आ रहा है।

इस मैकेनिक के पास एक टी_वी_एस एक्स_एल सुपर भी है।

और इस गैराज में एक अच्छी लाइट जली हुई है और इस गैराज में टीन शेड भी पड़ा हुआ है।

यह चित्र एस_आर इंटरप्राइजेज लिंक रोड सहारनपुर का चित्र है।

और पहाड़ भी हैं जिसमें तीन दोस्त घूमने के लिए आ रखे हैं।

और एक दोस्त वॉटरफॉल के अंदर जा रहा है।

और उस फुहार के पास ही कुछ फूल्स लगे हुए हैं और--

यह एक जिम प्रतियोगिता हो रही है इस--

इस चित्र में एक आदमी टेबल पर बैठा हुआ है शायद कश्मीरी ज्वैलर्स का गार्ड होगा।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक का सामान रखा हुआ है जोकि एक मेज पर रखा हुआ है।

यह एक किराना शॉप लग रही है जिसमें--

मीट मसाले और पान गुटका और मैगी के पैकेट टंगे हुए हैं इसमें--

एनर्जी बूस्टर भी टंगा हुआ है और कुछ डोरी भी टंगी हुई है।